ये देखिये गाड़ी में डीजल भरा रहा है और ऑटो वही खड़ा है।

ये घर कितना अच्छा लग रहा हैं।